यहाँ पे एक ऐसे लग रहा है जैसे कोई मारपीट हो यहाँ आदमी अपना चीज़ें बेच रही है निम्बू बेच रहें है गुआवा --

यहाँ पे थोड़े लोग ऐसे लग रहे है जैसे कोई शो देखने के लिए आये हैं।

हमें हमीरपुर करके आप सामने से किन्नी दूर जा रहे हैं।

अलग प्रकार की मूर्तियॉ है पता नहीं चल रहा हैकी क्या है। मूर्तियों का बैग्राउंड में कुछ कलर नजर आ रहा है।